और ये जो अ फर है उसमें ये आसमानी ए सेलेटी कलर का है और ये देखने में बहोत अच्छा लग रहा है और लाइन बाय लाइन ये रखें हुए हैं फर और ये सभी से ही और अच्छा लग रहा है देखने में --

और चादर तान के यहाँ पे बहुत सारे लाइट लगी हैं बहोत सारे पिलर्स हैं और यहाँ पर लोहे की रेन खड़े हुए हैं जो स्टील्स के बने हुए हैं जो देखने में बहोत अच्छे हैं। जगह-जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं और बहोत अच्छे हैं देखने में।